और सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे--

ब्लू कलर के मछली का नाम भीट की मछली--

यहां पे नीचे एक बैग पे एक बोतल है।

यहां पे मां सरस्वती भी है।

साइड पे कोला का गाछ भी है।

कुछ कुछ पे कुछ कुछ हो भी चुका है।

यहां पे बहुत ही सारे ग्रीन टोमेटो है।

शाम के करीब तीन चार बज रहे होंगे।

छवि का फेस ढका हुआ है।

एकदम फेस नहीं दिख रहा--

यहां पे बिल एंड रिचार्ज होता है।

टोटल ट्वेंटी एट फूलों के टब है।

यहां पे क्रिसमस ट्री भी--

ब्लैक कलर का एक टेबल है चेक सी एक सर्ट है गोल्डन कलर का एक कपरा है।

दो लोगों के शकल ढका हुआ है।

और रेस्टोरेंट पे कोई है भी नहीं।

ये सारे चिप्स वगैरा है कुछ परफ्यूम्स वगैरा भी है।

ये कोई मैरिज हाल है जो काफी लग्जरी है।

आपका फेस ज्यादा ही कलरिंग हैं।

रूम भी रेड कलर का है।

यहां पे एक फोटो भी टंगा हुआ--

एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

यहां पे पांच मछलियां है।

वो बाइक जो है ब्लैक कलर का रखा--

साइड पे एक माउंटेंस के जैसा भी है।

बैठने के लिए भी कुछ सुविधा है और स्टेशन थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है।

एक इंसान खड़ा भी है बी_आर मेडिकल स्टोर ।

यहां पे एक लाइन भी है।

और कुछ कुछ डब्बे हैं गोल्डन कलर का ढक्कन हैं इसका।